नमस्कार इस ट्यूटोरियल के प्रथम भाग में हमने अपने डेटाबेस php academy के अंदर एक टेबल यानि तालिका बनाई थी और इसके साथ चलने के लिए हमने सभी ज़रूरी डेटा से युक्त अपने फील्ड्स बनाये थे datatypes इत्यादि
अब हम इस तरह से अपने डेटाबेस के अंदर कुछ प्रतिरूपी डमी डेटा प्रविष्ट करेंगे
मैं इस insert बटन को क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि इस बटन को यहाँ क्लिक करने से हमें उपयोग के लिए आसान इंटरफेस मिलता है जिसमें हम `firstnamelastnameजन्म तिथि कैलेंडर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ टाइप कर सकते हैं
आप देख सकते हैं कि यह अभी ऊपर आ गया है
और हम अपना genderलिंग भी यहाँ एन्टर कर सकते हैं
चूँकि यह mysql php ट्यूटोरियल है तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे mysql या php का उपयोग करते हुए डेटा प्रविष्ट करें
अब सर्वप्रथम हमें अपने डेटाबेस से जुड़ना होगा
mysql dot php फाइल के अंदर हम अपनी फाइल connect dot phpको सम्मिलित करने के लिए include फंक्शन इस्तेमाल करेंगे
अब अगर यह उसी डाइरेक्टरी में नहीं है आप जानते हैं कि आप sub directory और फिर connect लिख सकते हैं
कृपया इसे स्पष्ट रूप से बताएँ
यदि आप पेज का निष्पादन नहीं चाहते हैंयदि आप rest of the page का निष्पादन यहाँ नहीं चाहते हैं आप require फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं
require फंक्शन पेज को खत्म कर देता है यदि यह यहाँ से आगे नहीं मिलता है
include इसको सम्मिलित करेगा और फिर यह एकोecho करने के लिए जारी रहेगा या बाकी के पेज को रन करते हुए आगे बढ़ेगा
यदि आप require फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो यह असल में खत्म कर देगा यदि यह सम्मिलित नहीं हो सका
अतः मैं लिखूँगा कि require connect dot php केवल यह कहने के लिए कि यदि आप डेटाबेस से नहीं जुड़ पा रहे हैंबाकी पेज व्यर्थ है
हमें ढेर सारी व्यर्थ वस्तु पेज पर मिलेगी
अच्छा अतः यदि require connect dot php और connect dot php के अंदर हमें चाहिए कि अपने php mysql फंक्शन्सfunctions प्रारंभ करें
सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है हम अपने connect नामक वेरिएबल से शुरू करेंगे और यह mysql_connect फंक्शन इस्तेमाल करेगा
यह पहला फंक्शनfunction है जिसे आपको सीखने की ज़रूरत है
यह बहुत ही ज़रूरी फंक्शनfunction है जो आपको आपके डेटाबेस mysql से जुड़ने में समर्थ बनाता है
यह 3 पेरामीटर्स लेता है
यहाँ पर पहला खुद वेब सर्वर हैवेब सर्वर का अड्रेस
मैं इस समय अपना कम्प्यूटर एक लोकल वेब सर्वरlocal webserver के साथ मेरे लोकल होस्टlocal host के साथ उपयोग कर रहा हूँ
यह इस तरह से भी लिखा जा सकता है127001 यदि आपकी इच्छा लोकल होस्ट के एवजी की है
मैं व्यक्तिगत रूप से local host टाइप करना पसंद करता हूँ
अब मैं मुझे दिया हुआ मान्य यूज़रनेम username और पासवर्ड इस्तेमाल करूँगा
यह root है
मेरा पासवर्ड अस्तित्व नहीं रखता क्योंकि मेरे पास पासवर्ड नहीं है
हमने अपना सम्पर्क बना लिया है किन्तु क्या होगा यदि यह सम्पर्क ठीक से न आरम्भ करे
इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि or die लिख सकते हैं और कोष्ठकों के अंदर हम एक एररerror सूचना बता सकते हैं उदाहरणस्वरुप connection failed
अतः चलिए मान लेते हैं कि इस समय यह सम्पर्क कार्य कर रहा है
मैं connected नामक कोड का एक भाग एको echo करूँगा
अच्छा अब यदि यह सफलतापूर्वक जुड़ता है तो बाकी स्क्रिप्ट रन होगी और connected एको होगा अन्यथा यह आपको केवल यह टेक्स्ट देगा और बाकी का पेज रन नहीं करेगा
अतः मैं क्या करूँगा किमैं यहाँ पर बैकअप खोलूँगा
रिफ्रेशrefresh करें और आप connect dot php और mysql dot php देख सकते हैं और मैं mysql dot php पर क्लिक करूँगा
मेरा कनेक्टconnect पर क्लिक न करने का कारण यह है क्योंकि mysql के अंदर हमें किसी तरह भी connect dot php की आवश्यकता होती है
अतः जब तक यह दोनों सेव हैं हम बस mysql dot php रन कर सकते हैं
हम सफलतापूर्वक जुड़ गये
अब यदि मैं इसे बदल कर कुछ लिखूँ जैसे i dont exist तब हमें एक सम्पर्क एरर मिलती है क्योंकि यह होस्ट नेमhost name अस्तित्व नहीं रखता कम से कम इस कंप्यूटर पर
मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ यह काफी समय ले रहा है अच्छा हमें यह मिला
आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें mysql एररerror मिली है और हमारे पास कनेक्शन फेल्ड का टेक्स्ट बिलकुल यहाँ है जिसका हमने पहले विवरण दिया था
अच्छा तो हमें unknown mysql server host मिला
यदि कभी भी आपको यह एररerror मिलती है आपको पता है क्या करना चाहिए
यह होस्ट है जो मैंने बताया है और आप देख सकते हैं कि यह किस लाइन पर है और हमारे सारे साधारण डीबगिंग कोड हैं
अतः चलिए मान लेते हैं कि मैं ummm वास्तव में मैं पहले क्या कर सकता हूँ कि आपको एक और उपयोगी चीज़ दिखाता हूँ या die आप यहाँ एक और फंक्शनfunction बता सकते हैं
यह दूसरा फंक्शनfunction है जो आपको सीखना चाहिए
यह mysql error है बस इस तरह से कोष्ठक रख दीजिये और जब हम i dont exist को रखते हुए अपना पेज रिफ्रेशrefresh करते हैं
हम रिफ्रेशrefresh कर सकते हैं और यह समय ले रहा है
ठीक है हमें यह मिला
हमने मूलतः क्या किया है कि हमें वही एरर error सूचना को एकोecho किया जो php से किसी तरह से मिली थी
हालाँकि यदि आपकी ummm मैं कैसे बोलूँ यदि आपके प्रयोगकर्ता के लिए आपकी एरर error रिपोर्टिंग बंद है यह आपको वही देगा जो आप चाहते हैं
अब हम यह प्रयोगकर्ता के लिए एकोechoनहीं कर रहे हैं
चलिए हम यहाँ ऊपर जाते हैं और लिखते हैं error reporting
कृपया मेरे द्वारा बनाया गया एररerror रिपोर्टिंग ट्यूटोरियल देखिये यदि आपने नहीं देखा है
यदि आपने इसको 0 पर सेट किया है
यह हर एरर errorरिपोर्टिंग को बंद कर देगा
अतः क्या होता है कि यहाँ यह एररerror उपेक्षित हो जाएगी किन्तु हमारी विशिष्ट एररerror यूजरप्रयोगकर्ता को मिलेगी
चलिए यहाँ रिफ्रेशrefresh करते हैं फिर से यह समय ले रहा है अतः मैं क्षमा मांगता हूँ
आपको यह मिला हम अब कह सकते हैं कि हमें हमारी विशिष्ट एररerror मिल गयी है ठीक है
यह मानते हुए कि इस फंक्शन fuction का उपयोग करके हम सफलतापूर्वक जुड़ गए हैं और यदि नहीं तो हमने यह एररerror सूचना दे दी है अगला कार्य यह करना है कि अपने डेटाबेस को चुनना है
यह करने के लिए हम mysql_select_db फंक्शनfunctionका उपयोग करते हैं
यह ठीक 1 पैरामीटर लेता है और वह आपके डेटाबेस का नाम है
अतः हम php myadmin पर फिर से क्लिक करते हैं हम देख सकते हैं कि हमारे डेटाबेस का नाम phpacademy है
अतः यदि मैं केवल phpacademy टाइप करता हूँ इसे कार्य करना चाहिए
साथ ही हम इस or die फीचर का उपयोग कर सकते हैं
or die फंक्शनfunction का इस्तेमाल करते हुए हम mysql_error बता सकते हैं यदि यह नहीं दिखता है या इस तरह कुछ भी
अतः चलिए इसे रिफ्रेशrefresh करें
असल में मैं इसे वापस local host में बदलूँगा क्योंकि मैं यहाँ फिर से ट्रैक पर आ रहा हूँ और चलिए रिफ्रेशrefreshकरते हैं
अतः यह connected है और यदि यह नहीं मिलता है तो हमें mysql_error मिलती है
चलिए यह जाँचे i dont exist और रिफ्रेशrefresh करें और unknown database idontexist
यह सही कार्य कर रहा है
इस प्रकार की एरर्सerrorsहोना काफी लाभदायक है और फिर हमें यूजर्स प्राप्त हो सकते हैं वापस रिपोर्ट करने के लिए यदि वे नहीं हैं
अतः यह यहाँ phpacademy है
मैं मान लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है और चलिए रेफ्रिशrefresh करते हैं
इसे वापस phpacademy में बदलिए और इसे सेव करिये
रिफ्रेशrefresh करें और हम सफलतापूर्वक जुड़ गये
मैं क्या करूँगा कि इसका एक अभिलेख रखूँगा और बोलूँगा कि मैं सफलतापूर्वक जुड़ा हूँ
बाकी के कोड के साथ जारी करने के लिए मैं अपना अनुच्छेद इसके बाद समाप्त करूँगा
अगला कार्य है कि अपने डेटाबेस में कुछ डेटा लिखें जिसको हम अपने अगले ट्यूटोरियल में समाविष्ट करेंगे
जल्द ही मिलेंगे! मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद